और वहां बहुत सारा लाइट्स दिखाई दे रहा है जोकि सीलिंग में लगा हुआ है।

वहां पर एक फ्रेम दिखाई दे रहा है फोटो फ्रेम जिसमें आदमी लोग प्रे कर रहे हैं।

ऊपर वाल दिखाई दे रहा है जो की वाइट कलर से पेंट किया गया है और वहां पर एक घड़ी दिखाई दे रहा है जो की वॉल में टंगा के रखा हुआ है।

एक कढ़ाही दिखाई दे रहे जिसके अंदर बहोत सारा चाट रखा हुआ है वहां पर एक स्टील चम्मच भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर बहोत सारा कपड़ा दिखाई दे रहे हैं जो की लेडिस और बॉयज दोनों का है।

हवा है बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है रूबी रेस्टोरेंट वहां पर एक दौर भी दिखाई दे रहा है।

वहां पे ट्रांसपेरेंट ग्लास दिखाई दे रहे है जो की काउंटर पे लगा हुआ है और वहां बहुत सारा लड्डू दिखाई रहा है वहां बहुत सारा चना दिखाई दे रहा है वहां बहुत सारा दही दिखाई दे--

वहां पर पत्थर लोग भी दिखाई दे रहा हैं जो कि व्हाइट कलर से पेंट किया गया है।

यहा बड़ा सा रोड दिखाई दे रहा है जिसमे एक व्हाइट कलर का बस भी दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है जो की एक बिटकॉइनपर के ऊपर रखा हुआ है।

और वहां एक कार्टून बॉक्स दिखाई दे रहा है जो कि डस्टबिन के ऊपर रखा हुआ है और वहां पर एक डोर भी दिखाई दे रहा है।

अवा सेफ दिखाई दे रहा है जिसके अंदर बहुत सारा सामान को अरेंज करके रखा हुआ है।

यहां पर बड़ा सा एक रूम दिखाई दे रहा है जो कि व्हाइट कलर का है और वहां पर सात फादर हैं जो कि तीन बैठे हैं और चार जोकि खड़ा होके दिखाई दे रहे हैं।

या बड़ा सा एक बैंक दिखाई दे रहा है जिसमें एक बोर्ड लगा के भी दिखाई दे रहा है।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

एक जू है जिसमें क्रोकोडाइल दिखाई दे रहा है सोते हुए।

एक बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है जो कि एक डीलर है जहां पे आदमी लोग सर्विसिंग करने आते हैं।

और वहां पर बहुत सारी स्कूटी और बाइक दिखाई दे रहे हैं जो कि वह लोग बना रहे हैं।

दो व्हाइट लाइट दिखाई दे रहे हैं जो कि जला हुआ है।

वहां पर एक टी_वी दिखाई दे रहा है जो कि वॉल में लगा हुआ है और वहां वॉल दिखाई दे रहा है जो कि वाइट कलर का है और वहां सीलिंग दिखाई दे रहा है।

और एक आदमी दिखाई दे रहा है जो कि रेड कलर का कपड़ा पहना हुआ है और वहां पर साइड वाल बिग वाल में मिरर दिखाई दे रहा है।

वहां पर फ्लोर दिखाई दे रहा है जोकि बॉक्स बॉक्स डिजाइन का है।

और वहां पर बहुत सारा डिजाइन भी दिखा रहा है जो की गेट पे लगा हुआ है।

वहां पर लिखा हुआ है अरुणाचल ड्रॉप हाउस जो की वाइट कलर से लिखा हुआ है।

यहां पर दिखाई दे रहा है जोकि व्हाइट कलर का पेंट किया गया है।

और वहां पर बोर्ड दिखाई दे रहा है जो की लगा हुआ है और वहां पर छोटा छोटा टिकट काउंटर दिखाई दे रहा है।

इलेक्ट्रिक बोर्ड दिखाई दे रहा है और इलेक्ट्रिक वायर दिखाई दे रहा है और वहां बड़ा सा आसमान दिखाई दे रहा है।

इसमें एक सेल्फ है वहां पर सामान को अरेंज करके रखा हुआ है।

एक बडा प्लेटफार्म दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारा आदमी दिखाई दे रहा है डांस करते हुए।

और वहां पे एक वॉल दिखाई दे रहा है जो की ब्लू कलर से पेंट किया गया है।

और वहां पर बहोत सारा गैलन दिखाई दे रहा है जोकि टांगा के रखा हुआ है।

लौ रखा हुआ है वहां पे दो आदमी दिखाई दे रहे है जो कि खड़ा हुआ है वहां पे लैंप्स दिखाई दे रहे है जो किसी सीलिंग में लगा हुआ है वहां पे एक घड़ी दिखाई दे रही है जो कि वाल में लगा हुआ है।

यहां बहुत सारा वेजिटेबल्स दिखाई दे रहा है जिसमें एक साइड मे बहोत सारा टोमेटोज हैं।

और वहां पर एक बैग भी दिखाई दे रहा है जो की व्हाइट कलर का है वहां पर एक वजन करने वाला भी दिखाई दे रहा है जिसमें एक बाती रखा हुआ है और उसका ऊपर में चिल्लीस--

और वहां ट्रांसपेरेंट ग्लास भी दिखाई दे रहा है जोकि वहां लगा हुआ है।

और वहां एक लंबा सा वाल दिखाई दे रहा है जो कि व्हाइट कलर से पेंट किया गया है।

ऊपर बहोत सारा लाइट्स भी दिखाई दे रहे हैं छोटा छोटा सा वहां पे एक स्टार भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर चार घर दिखाई दे रहे हैं जिसका छत ब्लू कलर का है।

वहां लंबा लंबा पोस्ट दिखाई दे रहा है वहां लंबा बड़ा सा रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा है।